लिबर ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन नोट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम नोट्स के बारे में और उनको प्रिंट कैसे करना सीखेंगे
नोट्स दो उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है
दर्शकों के लिए प्रत्येक स्लाइड पर अतिरिक्त सामग्री या रेफ्रेन्सेस के लिए
उद्घोषक को रेफ्रेंस नोट्स के ज़रिये मदद करने के लिए जब वह दर्शक के सामने स्लाइड्स प्रस्तुत करे
प्रस्तुति sample impressओडीपी
बायीं तरफ पर स्लाइड्स पेन से ओवरव्यू शीर्षक स्लाइड चुनें
टेक्स्ट को बदलें
टो अचीव 30 shift टो ओपनसोर्स सॉफ्टवेयर विथिन 1 यियर टो अचीव 95 shift टो ओपनसोर्स सॉफ्टवेयर विथिन 5 यर्स पेज में कुछ नोट्स जोड़ें जिससे कि जब यह प्रिंट हो पाठक के पास कुछ रेफ्रेंस सामग्री हो
नोट्स के संपादन के लिए नोट्स टैब पर क्लिक करें
स्लाइड के नीचे एक नोट्स टेक्स्ट बॉक्स प्रदर्शित होता है
यहाँ हम नोट्स टाइप कर सकते हैं
क्लिक टो एड नोट्स
पर क्लिक करें
ध्यान दें कि आप इस बॉक्स का सम्पादन कर सकते हैं
टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें मैनेजमेंट वाउल्ड लाइक टो एक्सप्लोर कॉस्ट सेविंग फ्रॉम शिफ्टिंग टो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हस नोव बीकम आ वायबल आप्शन टो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विल फ्री थे कंपनी फ्रॉम आर्बिट्रेरी सॉफ्टवेयर अपडेट्स ओएफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर
हमने अपना पहला नोट बना लिया
सीखते हैं कि नोट्स में कैसे टेक्स्ट को फ़ॉर्मेट करें
टेक्स्ट चुनें
इम्प्रेस विंडो के ऊपरी बाएँ कोने पर फोंट टाइप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और टीएलडब्लूगमोनो चुनें
अब फोंट साइज ड्रॉप डाउन में 18 चुनें
उसी टास्क बार में बुलेट आइकन पर क्लिक करें
अब टेक्स्ट में बुलेट पॉइंट्स हैं
सभी नोट्स को स्टैन्डर्ड फ़ॉर्मेट में बदलने के लिए एक नोट्स मास्टर बनाना सीखते हैं
मुख्य मेन्यू में व्यू पर क्लिक करें और फिर मास्टर पर क्लिक करें
नोट्स मास्टर पर क्लिक करें
नोट्स मास्टर व्यू दिखता है
ध्यान दें दो स्लाइड्स प्रदर्शित होती हैं
इसका मतलब है कि प्रस्तुति में इस्तेमाल प्रत्येक मास्टर स्लाइड के लिए एक नोट्स मास्टर होता है
नोट्स मास्टर स्लाइड टेम्पलेट की तरह होती है
आप यहाँ फ़ॉर्मेटिंग प्राथमिकता निर्धारित कर सकते हैं जोकि बाद में प्रस्तुति में सभी नोट्स पर लागू होगी
स्लाइड्स पेन से पहली स्लाइड चुनें
नोट्स प्लेस होल्डर पर क्लिक करें और उस पर प्रदर्शित टेक्स्ट को चुनें
इम्प्रेस विंडो के सबसे ऊपरी बाएँ कोने पर फोंट साइज ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और 32 चुनें
मुख्य मेन्यू में फॉर्मेट और कैरेक्टर पर क्लिक करें
कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
फोंट इफेक्ट्स टैब पर क्लिक करें
फोंट कलर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और रेड चुनें
ओक पर क्लिक करें
नोट्स पर लोगो जोड़ते हैं
चलिए त्रिकोण जोड़ते हैं
ड्राइंग टूलबार से बेसिक शेप्स पर क्लिक करें और आइसोसेलेस ट्रायंगल चुनें
नोट्स टेक्स्ट बॉक्स के ऊपरी बाएँ कोने पर त्रिकोण प्रविष्ट करें
त्रिकोण चुनें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें
एआरईए पर क्लिक करें
एआरईए डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
एआरईए टैब पर क्लिक करें
फिल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और कलर पर क्लिक करें
अब ब्लू 7 चुनें
यह फ़ॉर्मेटिंग और लोगो डिफ़ॉल्ट रूप से सभी बनाये गये नोट्स के लिए होंगे
ओक पर क्लिक करें
मास्टर व्यू टूलबार में क्लोज मास्टर व्यू पर क्लिक करें
मुख्य पेन में नोट्स टैब पर क्लिक करें
बायीं ओर पर स्लाइड्स पेन में शीर्षक ओवरव्यू स्लाइड चुनें
ध्यान दें कि नोट्स वैसे ही फ़ॉर्मेट हो गये हैं जैसा कि मास्टर नोट्स में निर्धारित है
अब सीखते हैं कि कैसे नोट्स प्लेस होल्डर और स्लाइड प्लेस होल्डर का आकार बदलें
स्लाइड प्लेसहोल्डर चुनें बायाँ माउस बटन दबाएँ और इसे स्क्रीन पर सबसे ऊपर ले जाएँ
यह नोट्स प्लेस होल्डर का आकार बदलने के लिए अधिक स्थान बनाता है
अब नोट्स टेक्स्ट प्लेस होल्डर के किनारे पर क्लिक करें
बायाँ माउस बटन दबाकर रखें और आकार बढ़ाने के लिए इसे ऊपर ड्रैग करें
जैसा हमें चाहिए वैसा हमने प्लेसहोल्डर्स का आकार बदलना सीख लिया
अब देखते हैं कि कैसे नोट्स को प्रिंट करें
मुख्य मेन्यू में फाइल पर क्लिक करें और प्रिंट चुनें
प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
प्रिंटर्स की सूची से आपके सिस्टम से जुड़ा प्रिंटर चुनें
नंबर ओएफ कॉपीज फील्ड में 2 प्रविष्ट करें
प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें और ओरिएंटेशन के अंदर लैंडस्केप चुनें
ओक पर क्लिक करें
प्रिंट Documentके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू से नोट्स चुनें
अब लिब्रियोफिस इम्प्रेस टैब चुनें
कंटेंट्स के अंदर स्लाइड नामे बॉक्स को चेक करें
डेट एंड टाइम बॉक्स को चेक करें
ओरिजिनल कलर बॉक्स को चेक करें
प्रिंट पर क्लिक करें
यदि आपके प्रिंटर की सेटिंग्स सही से कन्फिगर है तो स्लाइड्स अब प्रिंट होना शुरू हो जाएँगी
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के समाप्ति की ओर आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने नोट्स के बारे में सीखा और उन्हें प्रिंट करना सीखा
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
एक नई प्रस्तुति खोलें
नोट्स प्लेस होल्डर में कंटेंट जोड़ें और एक आयत जोड़ें
कंटेंट का फॉन्ट 36 और कलर ब्लू रखें
आयत को ग्रीन से रंगे
स्लाइड टेक्स्ट होल्डर की तुलना में नोट्स प्लेस होल्डर के आकार को व्यवस्थित करें
नोट्स को ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट फ़ॉर्मेट में प्रिंट करें
आपको नोट्स की पाँच प्रतियाँ प्रिंट करनी हैं
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contactspoken हाइफेन tutorialओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें spoken हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँहमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद